उसके करीब एक मकान है मकान का रंग सफेद है।

यहाँ लाल रंग के नाम लिखा हुआ है।

उसके पास कुछ पेड़ भी है घर के अंदर एक मूर्ति है।

यह एक मूर्ति है सफ़ेद रंग का मूर्ति में कुछ मालाऐं पहनाया गया है।